मुझे इस पिक्चर के अंदर गेट के ऊपर एक ऑनलाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर पर मुझे बहुत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा--

इस पिक्चर के अंदर मुझे अलग अलग रेस्टोरेंट्स की आइटम्स दिखाई दे रहा --

इस पिक्चर पर मुझे बहोत सारा आदमी दिखाई दे रहे --

इस पिक्चर पर मुझे मंदिर के पीछे बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर पर दिखाई दे रहे चर्च पर बहोत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर पर मुझे बहुत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर पर मुझे एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस पिक्चर पर एक ब्लू कलर की पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

जिस पिक्चर पर शॉप के अंदर वाइट कलर से पेंट किया गया है।

इस पिक्चर के अंदर मुझे घर के बाहर एक रेस गेम भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर के अंदर मुझे घर भी दिखाई दे रहा--

इस पिक्चर के अंदर मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर के अंदर येलो और रेड कलर की हैंडबैग भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर के अंदर एक टेबल भी दिखाई पा रहा है।

इस पिक्चर के अंदर घर की टीना को भी दिखाई दे रहा--

पिक्चर के अंदर पानी दिखाई दे रहे हैं।

इस आदमी के पीछे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

ये इस पिक्चर पर दो आदमी दिखाई दे रहा है।